अंदर सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर बनी हुई है।

आधा खुला हुआ है। वह एंट्री

बगल में एक काउंटर है काउंटर के बाहर एक व्यक्ति --

है तथा एक लड़की व एक लड़का कोने में बैठ कर वार्तालाप कर रहे हैं।

जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं जिसपर एडमिशन ओपन --

यह एक जिम है। यहाँ जिम के अंदर बहोत सारे एक्सरसाइज करने की मशीन रखी हुई --